सामने दिखाई दे रहा है कि यह कोई दूध की दुकान है और इस दुकान के आगे --

जो एक खेल द्वारा झूले से झूल रहे है और यहां पर आगे भी और झूले वे लगे हुए हैं।

सामने नज़र आ रहा है की यहां पर एक स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल मे --

और यह ढाबा अभी तक खुला नहीं है और इस ढाबे के आगे नाम लिखा हुआ है पंजाबी चे --

और उस ढाबे के उधर एक गाड़ी दिख रही है गाड़ी के पास कुछ आदमी दिख रहे हैं।

शीशा लगाया हुआ है एवं अलमारियों की तरफ पर्दे लगाए हुए हैं।

और इस दुकान के आगे एक गाड़ी भी खड़ी हई है जिसके बोनट ऊंचा किया हुआ है।

सामने दिखाई दे रहा है कि यह कोई पार्क है और इस पार्क में काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और इस रूम से बाहर निकलने के लिए अलग अलग गेट बनाए हुए है।